ग्लास लग लगी हुई है सभी बच्चे कराटे सीख रहे हैं कराटे के ड्रेस पे है यहां पर--

यहां पर यह महिला प्रेयर करवा रही है चर्च में सभी लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं।

यह एक जनरल स्टोर है यहां पर सभी प्रकार का सामान सभी प्रकार की स्नरी स्टेशनरी सामान और मेकअप का सामान क्रीम पावडर --

क्रीम पाउडर माला वगैरह माला वगैरह टंगा हुआ है और सभी प्रकार के लेडिस लेडिस लेडिस सामान है सभी के।

और बहोत ही अच्छा हॉस्पिटल है ये यह यहां पर बहोत ही अच्छी सुविधा है यहां पर सभी लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए।

अभी शांति छाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत नजारा ये दिखाई दे रहा है सूर्यास्त का।

यह एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी चेयर और टेबल लगी हुई हैं। कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग--

पर बहोत सारे लोग दिख रहे है और यहाँ पर बहोत सारी बाइक खड़ी हुई है रोड पर लोग चल रहे है बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मस्जिद --

पढ़ने जाने का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर आगे एक सड़क दी हुए दी गई है यहां पर गेट लगा हुआ है।

यहां पर यह जो हरा भरा नजारा दिखाई दे रहा है यह ये गार्डन का नजारा है यहां पर--

और सामने सीढ़ी दो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए--